ये एक फैक्ट्री का दृश्य है।

सामने की तरफ लोहे के मदद से एक ग्रिल भी लगाया हुआ है।

बहोत सारे बोतल रखी हुए है और अगरबत्तीयां रखी हुई है।

ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने चार पांच गाड़ियां दिखाई दे रहे हैं जो होंडा कंपनी के हैं।

ब्लू और वाइट कलर में है जो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक प्रिंटर भी रखा दिखाई दे रहा है।

नाव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे टेंट के मदद से सजाया गया है।

सामने की तरफ बहोत सारी कितारी और केला सेब रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दो तीन घरे भी दिखाई दे रहे है।

ये एक रूम का दृश्य है यहां पर बहुत सारे कार्टून रखे हुए हैं।

बहोत सारे ब्लू कलर में है जिसका लक्सत स्टार लाइट लिखा हुआ है।

एक प्लेट बिरयानी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक क्रीम कलर का कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

लाइट के मदद से होटल गेटवे कर्नाटका लिखा हुआ है।

एक मशीन भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है जो ब्लि ग्रीन और ब्लैक कलर में है।